वो उस तरह से दिख रहा है और सामने में वो सो के जैसा एक वॉल बन पे बना हुआ है।

उसमें उसमें इधर-उधर लोग घूम रहा है।

है बादल है चारों तरफ काला-काला वो पेड़ और दिख रहा --